इस चित्र में कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

जो वो हेयर कट करवाने के लिए--

इस चित्र में एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

टेबल और कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो भारत पेट्रोलियम है।

यहाँ कई टू व्हीलर और फोर व्हीलर --